यहाँ पे एक पहाड़ है पहाड़ पे से नीचे एक झरना जा रहा है आस-पास बहुत सारे पेड़ है छोटे-छोटे पौधे है सामने खे--

यहाँ पे एक घर बन रहा है यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए है नीचे लोहे के बड़े-बड़े सरिया लगे हुए है ईंटे रखी हुई है एक मकान बना हुआ है आस--

पेड़ है छोटे-छोटे पौधे है पौधों में फुल लग रहे है आस-पास और बिल्डिंगें बनी हुई है खम्बा लगा हुआ है खम्बे में डोरियाँ लगी हुई है।

के हुई है आस-पास माकन बने हुए है बड़े-बड़े पेड़ है लाइटें जल रही है एक चबूत्रा बना हुआ है ।

यहाँ पे लड़का है लड़का खड़ा हुआ है लड़का एक लकड़ी को पकडे हुए है कुछ लोहे के खम्बे गड़े हुए है उनपे गोल छ--

पड़ा हुआ है आस-पास बहोत सारे पेड़ है।

यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है बिल्डिंग के आगे रोड है आस-पास बड़ा सा ग्राउंड है वहाँ पे घास है छोटी-छोटी आस -प--